इ इ ये बाइके एक रेड कलर की है और एक ब्लैक कलर की है।

बजाने वाले का कलर ब्लू है।

प्रोफेशनल सैलून है और यहां पे बहुत--

यहां पे एक खुला मैदान में कुछ काठ का--

ब्ल्यू कलर का शर्ट पहना हुआ है और उसमें--

काम चल रहा है और इस काम कर रहे बंदे वाई--

कुछ टोपी भी पेहने हुए हैं जो कि सेफ्टी --

और यह एक बड़ा सा गेट बना हुआ है और गेट में--

इस बिल्डिंग का कलर हरा है और आगे भी एक--

है और बिल्डिंग का कलर वाइट है और --

उसमें खिड़की भी लगा हुआ है।

क्या हुआ है और टेबल के बगल में--